वह एक स्टेज का दृश्य दिखाई दे रहा है।

नीचे को नीचे को ओर आ रहा है व्यक्ति लोग दिखाई दे रहे हैं।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

यह एक बरामदा का दृश्य दिखाई दे रहा है घर का कलर है क्रीमी ।

नीचे जमीन में सिल्वर कलर का लाल कलर का पेंट किया हुआ है।

दीवाल का कलर है पीला खिड़की भी नजर आ रहे।

यह एक होटल का दृश्य दिखाई दे रहा है बहुत सारे टेबल लगे हुवे हैं।

दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं घर का कलर है सफेद और नारंगी।

एक बाइक भी दिखाई दे रहा है और एक कार भी दिखाई दे रहा है।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

कुरकुरे भी टंगे हुए हैं चिप्स भी टंगे हुए हैं तेल भी दिखाई दे रहे हैं ब्रश भी टंगे हुए हैं एक फ्रीज़ दिखाई दे रहा है उसमें जूस रखा हुआ है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं झाला बना हुआ है।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

दुकान में काउंटर में शीशे लगे हुए हैं।

बगल में घर दिखाई दे रही है नीला कलर का आकाश दिखाई दे रहा--